और एक बाइक भी है यहां पे देखिए कुछ पेड़ --

यहां पर देखिए आपको एक गैनरेटर दिखाई पड़ रहा होगा।

यहा पर देखिए आपको तरो-तराजू दिखाई दे रहा होगा देखिए तराजू पे बाट रखे हुए है तीन ओर देखिए यहा पे संतरा रखा हुआ है अनार रखा है केला रखा है ।

यहाँ पे छोटी छोटी घास भी है और कुछ बड़े-बड़े बी पेड़ लगे हुए है ।

यहा पर देखिए आपको इ-रिकसा दिखाई पड़ इ-रिकसा कलरफूल लगे हुए है। एक अ लाइट ग्रीन है रेड है ब्लू है और डार्क ब्लू है और ये इ-रिक्शा इकदम न्यू लग रहे है ओर अ देखिए रिकसे मे रिक्से के पीछे आपको कुछ पेड़ दिखाई पड़ रहे है और कुछ इंटे--

यहा पर देखिए आपको ब स्कूटी दिखाई पड़ रही है। स्कूटी का ब्लू कलर है | यहा पर दो स्कूटी खड़ी है दोनों ब्लू कलर की है। यहा पे देखिए सामने आपको एक अ_अ_देखाई पड़ रहा है मॉल ऐसा उसमे रेड कलर का निचे बना हुआ है। जो उसके शीशे लगे हुए है। ब्लू कलर --

देखिए ये रेड कलर का पोस्टर दिखाई पड़ रहा है। नीचे वॉल का कलर येलो है। यहाँ पे देखिए चैनल लगा हुआ है ब्लैक कलर का देखिए वॉल मे बहुत सारे पोस्टर लगे है देखिए अ इस बिल्डिंग के पीछे आपको एक पेड़ दिखाई पड़ेगा देखिए फ्रन्ट मे एक अंकल --